यहाँ पे सारे मोटर का व्हीकल्स मिलते हैं।

यहाँ लड़कियों लोग का रहने का स्थान है जो कि अपने पढ़ाई करती हैं इसमें रहके और आगे के जीवन के लिए सोचती हैं |

ऐसा लग रहा है यह पिक्चर को देख के कि यहाँ पे एक अ दुकान का चित्र है और उसमें सारे कपड़े तह लगा के रखे हुए हैं जो कि पूरी तरह से न्यू है।

यह पिक्चर एक टावर का है । ये टावर या तो मोबाइल का रिलायंस का है या एयरटेल का किसी का भी होगा और नीचे उसका चौक लगा हुआ है और एक पौधा भी है बादल का चित्र है ।

इसमें टावर भी दिख रहा है।

पेड़ भी दिख रहा है और गांव का भी चित्र है और रेलवे ट्रैक बा काफी पेंट किया हुआ है। लग रहा है अभी ही ये पेंट हुआ है।

इसमें बहोत सारे आदमी लोग बैठे हुए हैं जो शादी में आए हैं।

योगा कर रहे है रामदेव जी बाबा वाला योगा जो होता है वही वाला कर रहे हैं सब।

बहोत टेस्टी लग रहा है देखने से।